libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
यह tutorial database डिजाइन पर पिछले tutorial के आगे का भाग है
और यहाँ हम निम्न विषयों को सीखेंगे:
4 सूचना items को columns में बदलना
5 primary कीज़ उल्लिखित करना
6 table relationships relationships को स्थापित करना
पिछले tutorial में हमने एक सरल library application के लिए database डिजाइन की प्रक्रिया को शुरू किया था
हमने पहले library database को बनाने के उद्देश्य का पता लगाया था
फिर हमने library के बारे में सूचना खोज कर और सुव्यवस्थित करके अपनी प्रक्रिया को जारी रखा
और हमने सूचना को tables में बाँटा
और इस तरह हमने अपनी library database में चार tables निर्धारित किये थे: books authors publications और members
अब अगले step पर चलते हैं जो है सूचना items को columns में बदलना
यहाँ हम तय करेंगे कि किस सूचना item को हम प्रत्येक table में संचित करना चाहते हैं
प्रत्येक सूचना item जिसे हमने पहले निर्धारित किया था एक field बन गयी है और table में एक column के रूप में प्रदर्शित है
जैसा कि screen पर चित्र में दर्शाया गया है books table में 5 columns हैं जिन्हें fields भी कहते हैं
अतः यहाँ प्रत्येक row या record अपने columns में वास्तव में एक पुस्तक के बारे में सूचना रखते हैं
उसी प्रकार से authors table में प्रत्येक record केवल एक रचयिता की सूचना रखता है
और publishers table में प्रत्येक record केवल एक प्रकाशक की सूचना रखता है
अब आगे हम columns को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सुधार सकते हैं
उदाहरणस्वरुप हम author name को first name और last name में अलग कर सकते हैं जिससे कि हम इन columns के जरिये खोज या क्रमबद्ध कर सकें
और हमें गणनाओं के परिणाम tables में अलग columns में रखने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि जब हम परिणामों को देखना चाहते हैं base तब गणना कर सकता है
अब हमें tables और columns के बारे में स्पष्ट है आगे देखते हैं कि कैसे हम primary कीज़ उल्लिखित कर सकते हैं
primary की क्या है
प्रत्येक table एक column या columns के समूह को सम्मिलित करना चाहिये जो विशिष्ट row से table में संचित प्रत्येक row को बतलाती है
यह column या columns के समूह को table की primary की है
यह प्रायः एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जैसे book id या एक author id
हम primary की fields को बहुtables के logical सम्बन्धित data से जल्दी संघटित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और data को अपने लिए साथ में ला सकते हैं
और primary की में हमारे पास समरूपी values नहीं हो सकती
उदाहरणस्वरुप names लोगों के नामों को primary की की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि names unique अद्वितीय नहीं होते हैं
यहाँ एक ही table में एक ही name के दो लोग हो सकते हैं
आगे primary की में हमेशा एक value होनी चाहिए
यदि यह खाली या निरर्थक है तो हम इसे primary की नहीं मान सकते हैं
और हम एक autonumber के रूप में column का data type निर्धारित करके primary की column पर हमेशा एक value बना सकते हैं जो base स्वतः ही बनाएगा
जैसा कि screen पर चित्र में दर्शाया गया है हम अपने tables के primary कीज़ निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं:
books table के लिए bookid
authors table के लिए authorid
publishers table के लिए pulishersid
उसी प्रकार से भले ही यहाँ दर्शाया नहीं गया है members table के लिए membersid primary की होगी
अंततः tables में primary कीज़ निर्धारित करके हम entity integrity लागू कर रहे हैं
entity integrity सुनिश्चित करता है कि यहाँ table में समरूपी records नहीं हैं
यह यह भी सुनिश्चित करता है कि field जो table में प्रत्येक record को पहचानती है वह unique हैं और कभी निष्प्रभाव नहीं होते
अब हमारे पास तीन tables में primary कीज़ हैं हम relationships को स्थापित करके इन सबको एक साथ now सकते हैं
चूँकि base इस संकल्पना का समर्थन करता है इसे relational database management कहते हैं संक्षिप्त में rdbms
यहाँ कुछ प्रकार के relationships हैं और हम उन्हें अभी देखेंगे
सबसे पहले हम देखेंगे कि onetomany relationship क्या है
दिख रहे चित्र में books और authors tables को अभी देखते हैं
एक पुस्तक वास्तव में एक रचयिता द्वारा लिखी गयी है
अब यहाँ उदाहरण हैं कि जहाँ दो या कई लोग एक ही पुस्तक के सहलेखक होते हैं
किन्तु हम अपने उदाहरण को केवल एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही पुस्तक को रचने तक limit करते हैं
अपने उदाहरण के साथ जारी रखते हैं कि एक रचयिता कई पुस्तकें लिख सकता है
अतः authors table में दिखलाये जा रहे एक रचयिता के लिए यहाँ पर books table में रचयिता के द्वारा लिखी गयी काई सारी पुस्तकें हो सकती हैं
इसलिए यह onetomany relationship है
और हम इसे अपनी library database में दर्शा सकते हैं
author id को लेकर जोकि authors table में primary की है और उसको books table में जोड़कर
अतः books table में author id को foreign foreign की कहते हैं
उसी तरह से publisher id जोकि publishers table में primary की है यह books table में जोड़कर foreign की बन जाती है
अतः column या columns के समूह को बाँटने से हम database में onetomany relationships को दर्शा सकते हैं
और foreign कीज़ का इस्तेमाल करके table relationships को निर्धारित कर सकते हैं
अतः relationship स्थापित करने के लिए table में एक primary की को अन्य table में एक foreign की की तरह दर्शा सकते हैं
फलस्वरूप हम referential integrity को लागू करते हैं
मतलब table में प्रत्येक foreign की value सम्बन्धित tables में अनुकूल primary की value होगी
आगे देखते हैं कि manytomany relationship क्या होता है
अब table डिजाइन विंडो में वापस जाते हैं
एक पुस्तक जितने चाहे उतने library सदस्यों को जारी की जा सकती है यह मानते हुए कि यहाँ पर कई सारी प्रतियाँ उपलब्ध हैं
उसी प्रकार से एक सदस्य कितनी भी चाहे पुस्तकें ले सकता है अवश्य ही यह मानते हुए कि पुस्तकें उपलब्ध हैं
अतः यहाँ हमारे पास कई पुस्तकें कई सदयों को जारी करने का एक उदाहरण है
जो manytomany relationship को दर्शाता है
अतः हम इस manytomany relationship को अपने database में दर्शा सकते हैं
एक तीसरी table booksissued बना कर जिसे junction table भी कहते हैं
और यहाँ हम प्रत्येक दोनों tablesbooks और members से primary कीज़ कोbooksissued table में प्रविष्ट करेंगे
इसकी वजह से booksissued table सदस्य को जारी की गयी प्रत्येक पुस्तक को records करता है
अतः तीसरा junction table बनाकर हम manytomany relationships को दर्शा सकते हैं
और आखिर में यहाँ onetoone relationship है
कभीकभी कुछ attributes या columns केवल कुछ विशेष data के लिए निश्चित होते हैं और इसलिए कदाचित data से भरे जाते हैं
चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें केवल एक रचयिता के पास website address है और बाकी के पास नहीं
और authors table में नई website column को ज्यादातर खाली छोड़ने से हम disk space बर्बाद कर रहे हैं
अतः हम इस column को एक नई अतिरिक्त table स्थानांतरित कर सकते हैं जिसकी primary की वही author id होगी
अतरिक्त table में प्रत्येक record वास्तव में मुख्य table के एक record के अनुरूप होगा
जो onetoone relationship को दर्शाता है
अतः यहाँ हमने अपने database में relationships को स्थापित करना सीखा
इसी के साथ हम libreoffice में database डिजाइन के दूसरे भाग के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने database डिजाइन में निम्न विषय सीखें:
4 सूचना items को columns में बदलना
5 primary कीज़ उल्लिखित करना
6 table relationships को स्थापित करना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
यह project